गेट के अंदर बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं झूमर लगी हुई है।

और ग्रीन कलर की छोटी-छोटी घास लगी हुई है ।

जिस पर लाइटें भी लगी हुई है ।

ब्लैक कलर की इसमें टाइल लगी हुई है ।

यह एक यूनिवर्सल डिजिटल नेटवर्क है।

और दो ऑटो खड़े हुए है ।

यहां पर डॉक्टर्स बैठी हुई है एक डॉक्टर्स मा-मास्क लगाये हुए है।

रानी की दुकान मे खाने पीने का सामान रखा है। और एप्पल और ऑरेंज भी रखी हुई है। फल-फुल की दुकान पे एक व्यक्ति कथई कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। ब्लैक कलर की बॉर्डर है।

करछी रखी हुई है एक है एक बाउल में सूप रखा हुआ जिसमे चम्मच डली हुई एक ब्लैक कलर से प्लेट रखी हुई है और ये सब सामान टेबल पे रखा हुआ है।

सफेद कलर की दीवाल बनी हुई है ऑरेंज कलर की मशीन है एक व्यक्ति ने सफेद कलर का कुर्ता पहना हुआ है एक व्यक्ति ने बैगनी सी कलर का कुर्ता पहना हुआ है ।

वाइट कलर की लाइटे लगी हुई है। पेट्रोल पंप खाली है। दो व्यक्ति पेट्रोल पंप के पास खड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप की मशीन लगी हुई है और हम्म पेट्रोल पंप के पास बाउंड्री बनी हुई है।

यहां ब्रिज की नीचे दो बसे खड़ी हुई है। एक रिक्शा खड़ा हुए खड़ा हुआ है। दो व्यक्ति खड़े हुए है। बस नीले कलर से व्हाइट कलर से बस है।

जियो का बोर्ड लगा हुआ है और भी बैनर लगे हुए है गेट --